यह तस्वीर बंधन बैंक की है।

यह तस्वीर किसी झरने की है।

यह तस्वीर किसी हॉस्पिटल की है।

और पर्पल कलर का कर्टन लगा है।

यह इमेज डी_सी मॉडल सीनियर सेकेंड्री स्कूल की है।

जिसका कलर क्रीम एंड रेड है।

बाहर पार्किंग में कुछ एक्टिवा खड़ी है।

यह चित्र किसी ऑफिस का है।

जीसके बाहर एक गाड़ी पार्क की गई है।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई हैं।

कलर की चेयर एंड व्हाइट कलर के टेबल रखे गए हैं।

चल रहे है और साइडों में काफी अच्छे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।